यह एक चित्र है और इस चित्र में ये एक जंगल जैसा दिख रहा है जिसमे बोहोत सारे हरे कलर के पेड़ नज़र आ रहे हैं।

वहां पर तीन कुर्सियां भी रखी हुई हैं जो कि लाल रंग की हैं और कुर्सियों के पास एक अलमारी भी है जो कि हल्की नीले रंग की है।

जिसमे एक कबूतर सा बैठा हुआ है। जो कि सामने की तरफ देख रहा है और नीचे की तरफ पानी भी भरा हुआ है और ऊपर हरियाली - हरियाली सी नज़र आ रही है।

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक केक रखा हुआ है । जिस जो कि सफ़ेद रंग का गोल-गोल सा है और उसके ऊपर लाल रंग के दिल भी बने हुए हैं।